हॉस्पिटल के बाहर की ओर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उनके पास में एक एक कांच का ग्लास रखा हुआ है।

और पास ही मे दो छोटी बिसलेरी की बॉटल्स और एक पानी का जग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक होटल के रूम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक डबल बेड लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक सब्जी मंडी बनी हुई है जहां पे सभी तरह की सब्जियां और फल फ्रूट रखे हुए नजर--

जहां पर ये बिल्डिंग के बाहर की ओर एक बहोत ही खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ नजर आ रहा है।

ये एक गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक आसमानी कलर का कारपेट भी बिछा हुआ नजर आ रहा है।

यह नाटक की परफॉर्मेंस की जा रही है ये बी_डी_डब्ल्यू वर्ड स्कूल की --

यहां पे सभी बच्चों ने व्हाइट कलर के कुर्ता पजामा पहने हैं और तिरंगा झंडा हाथ में लिया है।

जो की एक भारत पेट्रोल पंप के नाम से है यहां पे बहोत सारी पेट्रोल डीजल की मशीने भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक वॉश बेसिन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जोकि आधे सूखे हुए नजर आ रहे हैं।

पुल के पास में ही एक मकान जैसा बना हुआ है।